बहुत प्यारा दृश्य है साथ ही पुरानी बाइक एक जगह है।

इसमें कटोरी में कुछ खाने वाला लग रहा है --

है और बहुत बढ़ियाँ से सजाया गया है और इसको खा के बहुत अच्छा लगता है।

यहां लग रहा है कुछ खेती उती करने की बातें चल रही है।

हैं कई प्रकार के गुलाब के फूल हैं पीछे एक महिला अपने बच्चे को दिखाने ले आ रही हैं।